यह एक नाई की दुकान है जिसपर देखा जा सकता है कि तीन नाई काम कर रहे हैं। एक नाई एक ग्राहक की दाढ़ी बना रहा है।

टेबल पर काफी दवाइयां देखी जा सकती हैं या डॉक्टर ने कोई फ्री कैंप लगाया होगा।

यहाँ पर काफी महिलायें योगा कर रही हैं ये सब योगा की एक क्रिया कर रही हैं।

यहाँ पर लगभग पचास से साठ लोग प्रतिदिन भोजन करने आते हैं।

यहाँ पर एक महिला ने नया ई-रिक्शा या जिसे बैटरी वाला रिक्शा सारथी कहते हैं वह ख़रीदा है।

तो यह दुकानदार उस महिला को उस रिक्शे की चाबी पकड़ा रहा है और उसे बधाई दे रहा है।

और सामने एक बिल्डिंग है जिस पर एसबीआई का बैंक भी है और कुछ लोग अपने काम से अंदर जा रहे हैं ।